दस माने ग्यारह महले का बिल्डिंग है बाबू ये ग्यारह महले का बिल्डिंग बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है।

तो अंकल तीन आदमी दिख रहा है तीनों आदमी झाँक रहा है आगे | गाड़ियाँ खड़ा हुआ दिख रहा है।

हिल रहे हैं | कुछ बच्चे बैठे हुए हैं कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं |

उसके आगे भी दो बालक बैठा हुआ है लेकिन बहुत दूरी पे बैठा है बाबू।

ए वन एन जे बी पार्लर ।

तैयारी चल रही है शादी की लगता है बाबू शादी समारोह --

बोहोत ही बड़ा सा ये मेरे को दिख रहा है वकालत-वकालत वाला एक अजय कुमार ठाकुर वकील जैसा कुछ बैठा हुआ है।